हॉल में आप देख सकते हैं बहोत ही प्यारा काउंटर सजा हुआ है मिरर यहाँ लगा हुआ है दो चेयर यहां पे काफी प्यारा लग रहा है ये रूम में देख के देख लीजिए --

गार्डन बीच में कुछ पानी इकट्ठा हुआ हुआ है और आसपास हम देख सकते हैं बड़े बड़े पेड़ हैं।

हॉस्पिटल में आप देख सकते हैं काफी सारे बेड लगे हुए हैं।

यहां हम देख सकते हैं यहां पे खाली मैदान है इसमें कुछ छोटे छोटे से गमले रखे गए हैं।

यहां हम देख सकते है यहां पे कुछ बच्चों छोटे बच्चों के कुछ टॉय रखें हैं टॉय आप देख सकते कितने प्यारे और सुंदर से है।

पी_आर_ओ का यहां बोर्ड लगा हुआ है और ये काफी बड़ा सारा है आप यहां देख सकते काफी सारी फोर व्हीलर अंदर खड़ी है जोकि एकदम नई है।

जो भी हमें देखने को यहां पे मिल रहा है।

और ये लड़का आप खुद यहां पे देख सकते हैं बहुत ही प्यारा ढाबा है ये यहां पे एक अंकल बैठे हैं जिनके चेहरा हम नहीं देख पा रहे हैं।

यहां हम देख पा रहे हैं यहां पे एक गार्डन है गार्डन के पीछे एक स्कूल बना हुआ है जो काफी बड़ा सारा है।

उसके आगे हम देख पा रहे हैं कुछ गाड़ियां खड़ी है जैसे की फोर व्हीलर लोडिंग टेंपो आप खुद देख सकते हैं काफी अच्छा है।

काफी सारा सामान है काफी सारे अंकल हमें देखने को मिल रहे सब अपना अपना काम कर रहे यहां पे आप देख पा रहे --

यहां हम देख पा रहे हैं यहां पे ऑटो सर्विस किया जा रहा है।